बहुत बड़ा वाला बिल्डिंग है। बहुत सारा खिड़कीयां है यहां में।

उधर साइड में पंखा भी लटका हुआ है यहां मे बहुत सारा लड़की लड़का यहां में लिख के पढ़ाई कर रहे--

दुकान दिखाई दे रहे हैं सुंदर सा और एक माल दुकान है।

लुइस फिलिप के ऐ_सी दिखाई दे रही है।

पेड़ लोग भी दिखाई दे रहे हैं साथ साथ में।

उसको पेंट करके है ग्रीन भी है फिर ब्लू भी है रेड भी है।

उधर में येलो कलर का बिल्डिंग भी है।

बना के रखा हुआ है।

पीछे वाला वॉल में वॉल क्लॉक भी है फोटो पे फ्रेम वगैरा चिपका के है।

पंखा भी दिखाई दे रहे हैं।

या में खड़ा करके रखा बेचने वाला कपड़ा।

एक तो आदमी यहां भी खड़ा होकर भी--

दो लड़का है यहां में जो की हेलमेट पहना है येलो कलर का पहन के रेड कलर का कपड़ा पहन के है।

यहां में शीशा का यहां में लगाके मोबाइल अंदर में रखा हुआ ऐसे दिखाई दे रहा यहां में।

एक डस्टबिन भी रखे हैं।

उधर आगे में दिखाई दे रहे हैं बिल्डिंग रूप में बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।